साउंड सिस्टम का चित्र है यहाँ पे शर्मा ऑडियो ऐसा बोर्ड लगा हुआ है।

हाँ साउंड सिस्टम का सेटअप है यहाँ पे शर्मा ऑडियो का बोल लगा हुआ है।

च ये चित्र मिर्ची का है वहाँ पे बहुत सारी मिर्चीया जमीन पर पड़ी दिखाई दे रही है वहाँ पे ब्लू कलर का टब दिखाई दे रहा है।

पर एक लेडिस बैठी दिखाई दे रही है चर्च के आजू बाजू में पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

वापीस स्टंपस लगाए लगाए हुए है ग्राउंड में हरी घास दिखाई दे रही है और ग्राउंड आखा हुआ दिखाई दे रहा है|

किसी का हाथ दिख रहा है उनके हाथ में जाम दिखाई दे रहा है बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं पत्तों का कलर हरा दिखाई दे रहा है।